यह हमें किसी हॉस्पिटल का लग रहा हैं यहाँ पे काउंटर बने हुए हैं और कुछ लोग काउंटर पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं लोग --

दोनों मास्क लगाए हुए है और लोगों की सहायता के लिए यहाँ पर डिप्ली बोर्ड लगे हुए है और घर हमें छोटा दिख रहा है और कुछ लेडीज खड़े हुए है लेडीज बैठी हुई दिखाई दे रही हैं।

नीचे हमे पिलर दिखाई दे रहे हैं और कुछ सीमेंट की ईंटे रखी हुई दिखाई दे रही हैं एक बाइक खड़ी हुई है और लकड़ीयां आड़ी खड़ी करके जोड़ी गई हैं जिनको बांधा गया है हमें आसमान दिखाई दे रहा है बिजली की तारे दिखाई दे रही हैं और रोड बना हुआ है।

यहाँ सामने हमें एक नीले कलर की बस खड़ी दिखाई दे रही है जिसमें पीले रंग की पट्टी बनी हुई है और उसमें कुछ लोग हैं और एक लड़की है सामने जिसने फेस कवर किया हुआ है और एक सफेद रंग की कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है पानी में खड़ी है वो भी और एक गुलाबी कलर की बिल्डिंग हमें नजर आ रही है उसमें दरवाजे बने हुए--